और यहाँ पर बोहोत सी पेड़-पौधे की--

और पानी से साफ़ कर रहे हैं।

ये एक बोहत बड़ी सी एक कंपनी की मकान है।

ये एक अलमाड़ी है इस अलमाड़ी में --

यहाँ एक आदमी फोटो खींचा रहे है।

इस ए.टी.एम. के बाहर गाड़ी और बाइक पार्क कर रहे थे।

तीन दुकान हैं और इस दुकान के बाहर बहोत सी भीड़ लगी हुई है इंसानों की।